एक स्टैचू लगा हुआ है जिसपे पीले कलर का सूट है।

ढेर सारे बोर्ड लगे हैं जिस पे लिखा है पचास और तीस।

दो कारें खड़ी हैं वाइट कलर --

एक साइकिल है साइकिल के ऊपर एक हरे कलर का बोट है।

एक मजार बनी हुई है जिसका पेंट ग्रीन और वाइट कलर का है।

ढेर सारे व्हाइट कलर के गमले रखे हुए हैं और कुछ पेड़ लगे हैं।

सामने एक बड़ा सा व्हाइट घर है उसके ऊपर एक लाल कलर का बोर्ड लगा है और एक नीचे बड़ा सा खूब बोर्ड लगा हुआ है।

दो कारें खड़ी हैं एक वाइट कलर की एक रेड कलर की।

आदमी खड़ा है व्हाइट टि शर्ट पहने।

गजरे टंगे हैं और उसमें डमरू लगा है गोल्डन कलर का और कुछ डमरू है रंग बिरंगी टाइप के।

पीले कलर का डालिए में फुल रखा हुआ है और एक पिंक कलर का फूल है।

और एक डॉग लेटा हुआ है।

कुछ बाइक खड़ी हैं एक बाइक के ऊपर एक आदमी बैठा है।

तीन खंभे हैं ऑरेंज कलर के।

ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हुई है सजी हैं।

कुछ पर्दे पड़े हैं जिसमें लाइटें लगी हुई है पर्दों में।

जमीन में हरी हरी घासें हैं।

कुछ कार खड़ी हैं व्हाइट और ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की और कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।

गढ्ढा बना हुआ है और ढेर सारी मट्टी पड़ी है।

ढेर सारे खंबे लगे हैं व्हाइट कलर के--

ये सारे पेड़ है छोटे बड़े हरे कलर के।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें ढेर सारी कुर्सियां लाल कलर की रखी हुई है।